पिक्चर में मुझे एक पार्क नजर आ रहा है।

बहोत सारे पेर नजर आ रहा और जुला नजर आ रहा है।

इस पिक्चर में एक ग्रीन कलर से बनाया हुआ कैम नजर आ रहा है।

इस पिक्चर में मुझे और वायर नजर आ रहा है।

इस पिक्चर में मुझे एक रूम नजर आ रहा है।

इस पिक्चर में मुझे एक रिसॉर्ट नजर आ रहा है।

इस पिक्चर मुझे एक चेयर नजर आ रहा है।

बिल्डिंग के पास एक गेट नजर आ रहा है।

इस पिक्चर में बहोत सारा चेयर नजर आ रहा है।

इस पिक्चर में मुझे एक रूम नजर आ रहा है।

लाल कलर के कपड़े हुए एक लड़का नजर आ रहा है।

बैग नजर आ रहा है इस पिक्चर में मुझे काला टीका बहोत सारा नजर आ रहा है।

इस पिक्चर पर मुझे बहुत सारा वायर नजर आ रहा है।

पिक्चर में मुझे एक घर नजर आ रहा है।

इस पिक्चर का दीवार येलो कलर से पेंट किया है।

इस पिक्चर में दो स्पून नजर आ रहा है।

मुझे एक ब्लैक कलर का टायर नजर आ रहा है।

इस पिक्चर में मुझे बहुत सारा चेयर दिखाई दे रहा है।